कुछ गमले ब्लैक कलर के बीच में पीछे की ओर रखे हुए हैं जिसमें छोटे पौधे हैं।

जमीन में पूरा ग्राउंड खाली दिख रहा है जो हरी घासे भी निकली है महीन सी।

इसके अंदर चुकंदर नजर आ रही है जो ढेर सारी एक कटरे में भरी हुई है।

एक सामने एक मूर्ति हुई लगी हुई दिख रही जिसके ऊपर सांप टाइप का कुछ बना हुआ है।

इसकी आंखों का कलर हल्का पीलापन है अ ब्लैक कलर है।

अब बड़े से इसके बाल भी हैं मूछें भी लंबी लंबी हैं इसकी।

बीच में एक रोड जो ब्लैक कलर की डामर वाली गई हुई है।

नीचे एक दीवार पूरी गई है जो व्हाइट और रेड कलर से पेंट हुई है।

बड़े बड़े पेड़ भी इसमें नजर आ रहे हैं।

और उसी के नीचे वाले एक पेट्रोल टंकी भी है।

बहुत सारे कंटेनर सामने मसीनें बनी हुई दिख रही हैं।

एक लेडिस नीले कलर का सूट पहने खड़ी हुई है और ए_सी के नीचे एक आदमी पुशअप लगाता हुआ दिख रहा है।

ब्लैक कलर की टेबले भी दिख रही है।

एक काउंटर लगा हुआ है जिसके पास आदमी खड़े हुए हैं।

इसके अंदर बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं जो चारो साइड बने हुए हैं।

और एक वाइट वाले पुतले पास एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

दो सीटे रखी हुई एक हरी और एक रेड कलर की।

बीच में पानी भी भरा हुआ है जो गंदा सा है।

बगल में एक फर्नीचर बना हुआ है बड़ा सा जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है।

और सीलिंग भी व्हाइट कलर की ऊपर की ओर बनी हुई है।

दो बड़े फूल दिख रहे हैं जो ये नीले और पिंक कलर के हैं।

और भीड़ भी खूब सारी इकट्ठा हुई है जिसमें से लेडिस सारी हैं।

दो साइड में पिलर भी है बड़े से जो ऊपर का हुए हैं।

एक आदमी टेबल पे खड़ा हुआ है सामने जो क्रिश्चियन वाला मार्क बना हुआ है।